इ पुल है पुल बूढ़ी गंडक पर बना हुआ है।

और ये ऐसे दिख रहा है जैसे घूमने वाला जगह है।

यहाँ फूल भी लगा हुआ है।

ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज बन रहा है और मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं मिस्त्री लोग अपना बना रहे हैं |

पिलर जुरा रहा है ई मिस्त्री जी यहाँ जो काम कर रहे हैं कहीं किसी का घर बन रहा है यहीं।

भगवान को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं।

बढ़िया घर है और जो जिसका भी घर है काबिले तारीफ है और देखिए इसमें जीना जो लगा हुआ है उस सीन का--